ग्राउंड है। ग्राउंड में हरी घास भी है और बिजली के दो पोल भी हैं।

मीटर के ऊपर एक छोटी- सी खिड़की हैं।

और एक पानी का भरा हुआ ड्रम भी रखा हुआ है यहाँ पर। मछली भी है।

एक कोल्ड्रिंक का फ्रिज हैं।

ए.सी. भी लगा हुआ है। पंखे भी लगे हुए हैं।

बच्‍चों के खेलने के लिए एक रेलगाड़ी भी है।

ये एक क्रिकेट ग्राउंड का दृश्‍य है। जिसमें ग्राउंड में नेट लगा हुआ है।

इस बेंसमेंट में और बेंसमेंट की जो दीवारो है वो सफेद है पिलर इसके नीले कलर के है।

और एक लड़का जिम में जिम कर रहा है जो कि अपनी बॉडी दिखा रहा है।

स्‍टोर के ऊपर पंखा है और लाईट लगी हुई है।

बिजली की लाईन भी है और आस-पास कुछ घर भी बने हुए हैं।

सामने तीन चार कम्‍प्‍यूटर भी रखे हुए हैं।

ये स्‍कूल का कॉरीडोर है जिसमें काफी सारे बच्‍चे टेबिल पर कुछ बना रहे हैं।

ये एक बिल्डिंग का दृश्‍य है जिसके ऊपर नगर पालिका परिषद् सम्भल लिखा हुआ है।

बोर्ड के बराबर में एक मकान भी दिख रहा है। मकान के यहांँ पे एक पेड़ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक कैफे जैसा दिखाई दे रहा है।